और दरवाजा जो लोहा से बनाया हुआ है।

हमे एक दुकान दिखाई दे रहा है।

और बाहर में दो ऑटो दिखाई दे रहा है।

घर का बाहर एक आदमी दिखाई दे रहा है।

उसमें काला गाय दिख रहा है।

यहां में एक सुंदर सा कमरा दिख रहा है।

और सीलिंग भी सफ़ेद रंग का है।

एक टेबल भी दिख रहा है।

और मेला का ऊपर में बहुत सारा इलेक्ट्रिक तार है।